यह जो सामने हमें ददृश्य दिखाई रहा है ये ईसाई धर्म से संबंधित --

या खाने-पिने की कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर आकर लोग रुकते होंगे।

देखने में तो ये किसी रेल्वे स्टेशन का नजारा दिखाई दे रहा है हालांकि ये गलत भी हो सकता है।

इस समय इन सभी लोगो ने आदर के साथ अपनी एक अपनी धार्मिक टोपी पहनी हुई है तो यकीनी तौर पर ये --

इन सभी चीजों की जानकारी दी गई है बड़े और सभ्रांत शहरों में इस तरह के शॉपिंग मॉल्स का चलन पिछले दस सालों मे चरम पर --

और कुछ-कुछ इसमें गिरिजा घर जैसा एक आभास ये बिल्डिंग अपनी --